पांच ट्रैक्टर है। उसके बाद से एक डाला है।

उसके बाद इस फोटो में एक पाइप भी है इंटा है।